मेलो का दिखाई दे रहा है तार लगा हुआ सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है छह साथ मंजिल है येलो कलर की है हरे हरे कलर की पुती हुई हैं। ऊपर का भाग--

पुल का सीन है एयरपोर्ट में टीन से लगा हुआ है सफेद कलर का है और इसमे नीला बोर्ड लगा हुआ है इसमे सफेद अक्षरों औरंगाबाद लिखा हुआ है।

मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मे लाल कलर के खंबे गड़े है मेन गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसमे कुछ आदमी है उसमें गेट लगी हुइ हैं इसमें बीच में कुछ गोल गोल बना हुआ है बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वृक्ष दिखाई दे रहे है बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तार आपका कान --

ये परछाई उसपे पानी मे पड़ रही है उस साइड बिल्डिंग लगी हुई है और सारे मकान बने हुए है।

साइद बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे है सफेद कलर की पुती हुई है और बोहोत सरे पेड़ पौधे दिखाई--